डोली जलाई है जिसमें से चिंगारियां उड़ रही है रात का माहौल है।

एक लड़का श कुछ सामान खरीद के जा रहा है एक आदमी फोन पे बात कर रहा है।

बाइक्स खड़ी है साइकिल खड़ी है दुकान के अंदर लोग खड़े हैं दुकान के अंदर सामान है।